ये एक जगह का चित्र हैं जहाँ पानी दिख रहा हैं।

दो लाल रंग के बोर्ड लगे हुए है कई रंग के कपड़े टंगे हुए--

नीचे गाड़िया खड़ी हुई है दो लोग दिख रहे है।